कितना सुंदर लग रहा है ये सब कुछ दे--

और देखो यहां पे पेड़ पौधे आपको दिख ही रहे हैं और देखो धूप आ रही है ठीक है इस टाइम पर वैसे भी कोई नहीं होता मतलब हरी भरी घासें भी है नीचे जमीन पर और --

ये है रेलवे स्टेशन यहां पे देखो आपको दिख रहे ना कितने रिक्शा वाले हैं सारे बाहर खड़े हैं और एक देखो ये ब्ल्यू टी शर्ट वाला वहां से जा रहा है।

अभी ये देखो बाहर तो एक आइसक्रीम वाणा खड़ा है।

यहां पे देखो मतलब फोटो नहीं दिख रही खड़े हैं और एक जगह अंडे वाला भी है।

चार मेम्बर खडे है और साइड मे एक शॉप भी है।

न्यूजपेपर या पेपर है ये कुछ पढ़ रहे हैं बैठकर आपस में कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं।

सोफा रख रखा है टेबल लगा रखा है और एक गमला लगा र--

एक आदमी तो लैपटॉप चला रहा है बैठकर कुर्सी पर ब्लैक कलर के और टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप --

पर वो बैठा है और गेट बंद है।

वो मिलती है टॉफियां वगैरह मिलती हैं ब्रेड दूध की थैली हर एक चीज मिलते थे कोई यहां पे दो आदमी भी हैं।

आपको तो पता ही है ट्रक का तो इस ट्रक में कोई भी नहीं बैठा और ये नीले कलर का है।

और देखो इसके पीछे ना पंजे जैसे लगे हुए है आपको पता ही ऐसे में मिट्टी वगैरा निकालने में या कोई भी सामान से मदद में काम आ --